एक टुरिस्ट प्लेस है का यहा पर एक किल्ला बना हुआ है जो काफी पुराना है जो की बोहत प्राचीन है लेकिन ये अभी भी वैसे के वैसे बना हुआ है।

यहाँ पर रोड रहेगा और रोड के किनारे पर यहाँ कुछ दुकाने बनी हुई है एक दुकान है यही रोड किनारे जो टीन के डिब्बे की बनी हुई है इसमे काउंटर लगा हुआ है आगे जिसमे --

यहा पर रोड है का और रोड के किनारे पर काफी सारी छोटी-छोटी दुकाने बनी हुई है। यहा पर --

यहा पर रोड है और रोड के किनारे पर बहुत सारे दुकाने हैं बहुत बड़े-बड़े दुकाने हैं और ज्यादा तर सभी दुकानो के ऊपर बैनर--

ये एक पार्क है गा और यह काफी बड़ा पार्क बना हुआ है और बहुत खूबसूरत भी है गा।